यहां पे एक परदा भी लगा हुआ है जो काले रंग का है।

और यहां पे कुछ बॉटल्स भी रखे हुए हैं जो की बहोत अच्छे हैं।

सफेद आसमान है और उसमें कुछ सफेद सफेद बादल है नीला आसमान है और यहां पे पूरा ब्लड दिख रहा है।

कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो हरे रंग के यहां पास एक छोटी सी मंदिर भी नजर आ रही है।

ये एक जगह है और यहां पे काफी सारे फल मिल रहे हैं।

और यहां पे दूर में एक बस भी है जो सफेद रंग की है।

यहां पे एक खिड़की भी लगी हुई है जिससे कुछ हल्की सी रोशनी आ रही है।

कुर्सियों का रंग हल्का ऑरेंज है यहां पे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जिसके --

ये काफी सारे लोग हैं और यहां पे काफी सारे छोटे छोटे--

और यहां पीछे भी काफी सारी गाड़ियां और एक गाड़ी है जिसका डिक्की खुला हुआ है।

बाइक है जो लाल रंग का है और यहां पे दो कुर्सियां भी लगी हुई है।

यहां पे एक बहुत सारे ड्राम्स रखे हुए हैं कुछ बोरे भी रखे हुए हैं।

और यहां पे बहुत टूटी फूटी चीजें भी रखी हुई है।

ये एक जगह है और यहां पे बहुत सारी घास लगी हुई है।

यहां पे काफी सारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं यहां पे एक घर भी है जो सफेद रंग का है और यहां एक बहुत बड़ा सा बोर्ड है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

एक घर भी है और वो देखने में काफी अच्छा है उनके डेकोरेशन भी देखने में काफी अच्छा है।

ये एक गाय है इसके चार पैर है दो सिंग है दो आंख है दो कान है एक मुंह है और ये पानी पी रही है और ये जो पानी पी रही है --

वो गाय सफेद रंग की है और ये गाय काले रंग की है।

और दो गाय है वो भी काले रंग की यहां पे बहुत सारी गाय--

ये एक जगह है यहां पे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जो मैंने यहां पे--

ये एक बहुत बड़ा सा घर है यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे रंग के यहां पे काफी सारी कार्स है जो सफेद रंग की है।

जो काले रंग के हैं और जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सभी--

और यहां पे एक लाइट भी चल रहा है दो तीन लाइटें लगी हुई है।

यहां भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहां पे दो हर्ट्स भी बने हुए हैं।

पे काफी सारे कलर से भरे हुए लाइट्स लगे हुए हैं और देखने में काफी--

प्यारे लग रहे हैं ये डेकोरेशन भी काफी कलरफुल है।

जो सफेद रंग का है और आप कुछ छोटे-छोटे घास लगे हुए हैं जो हरे रंग के--

बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो वो भी हरे रंग के है।

और यहां पे एक पीला रंग का घर है और उसमें छोटी-छोटी खिरकियां भी बनी हुई है।

यहां पे एक सफेद और ऑरेंज कलर का टूल भी रखा हुआ है।

और यहां पे एक भगवान का तस्वीर भी लगा हुआ है और एक डेस्कटॉप भी रखा हुआ है।